यह एक दुकान सी दिखाई दे रही है। दुकान में बहुत सारे खन बने हुए हैं जिसमें बहुत सारा सामान रखा हुआ है।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

खम्भे दिखाई दे रहे हैं। उसके पीछे घने-घने जंगल सा दिखाई दे रहा है।

यह एक कच्ची सड़क दिखाई दे रही है। जिसपे एक बड़ा सा गेट लगा हुआ है।

जो लाइन में खड़े हुए हैं। बच्चे अपने हाँथ को ऊपर किये हुए हैं। उन्हें देखकर ऐसे लग रहा है जैसे वो डांस कर रहे हैं।

हॉल में एक पंखा भी दिखाई दे रहा है। एक पर्दा दिखाई दे रहा है। पास में एक घर दिखाई दे रहे हैं।

कार के पास में दो आदमी खड़े हुए हैं। एक आदमी कार के पीछे है।

पहाड़ दिखाई दे रहा है। पहाड़ पर हरी भरी पेड़ दिखाई दे रही हैं।